ये एक मॉल है जहाँ पे सभी चीज मिलते हैं। खाने-पिने लगाने का समान --

ये एक पिक्क्प है। जिसपे डी.जे. लगा हुआ है। सेट किया हुआ है और साइड साइड से भी है। लाइट्स भी लगी हुई हैं जो रात में डांस करते हैं।

ये एक लड़का है जो जिम करके अपने सर का गंज उतारकर बॉडी का पिक ले रहा है सामने उसे और --

यह स्मार्ट फ़ोन है जो शायद रियल्मी कंपनी का है और का पेंट पहने हुए है। उसका बॉडी काफ़ी अच्छा है।